यह एक पग जानवर है जिसे हम हिरण के नाम से जानते हैं और हिरण बहुत ही प्यारा होता है।

और ये खड्डा खुना रहा है और लोग देख रहे हैं की कितना खड्डा खुनाया है।